सात के में रेत है और चट्टान भी और ये प्रकृति बहोत सुन्दर दिखाई दे रहा हैं ।

यह एक मकान है जिसमें लिखा है भूपेश बू-- बुक डिपो एवं लोकवाणी केंद्र जन सेवा केन्द्र हैं ।

और यहाँ पर मस्त फूल दिखाई दे रहा है साथ में एक छोटा भीम वाला कार्टून भी दिखाई दे रहा हैं ।

क्रिश्चन लोगों का एक यीशु मसीह वाला चित्र दिखाई दे रहा हैं ।

इसको काला अंगूर कहते है और ये खाने में बहोत अच्छा लगता हैं ।

और ये बहोत काला रहता है और इसका सवाद भी अच्छा रहता हैं ।

यह पुलिया है और इस नदी में बहोत बड़ा पुलिया दिखाई दे रहा हैं ।

लिख रहा है और यहाँ पर कई प्रकार के दवाई दिखाई दे रहे है और मरीज की संख्या कम- से- कम दस- बारह झने है और एक लाल पेन से लिखाई कर रहे हैं ।